अलग-अलग बिखरे हुए हैं और यह एक लौह के --

और सभी चेयर एक जैसे कलर की दिखाई--

ओर यहां पर बहुत सारी--